कुर्सियां पड़ी हुई है और आसपास में काफी सारे पौधे लगे हुए हैं और कुछ आकाश में बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ मकानों पे टंकियां लगी हुईं हैं और कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे कुछ--